यहाँ पर ये बच्चियां बैठी हुई है जो अपनी अपनी हम्म प्रतिभा दिखा रही है यह एक विद्यालय है इस विद्यालय में ये पढ़ती है और बताएं हर --

इसमें येलो कलर पुता हुआ है फ़ील्ड में घास भी है ग्रीन कलर की और यह बच्चियां देखो कितनी अच्छी तरीके से पेंटिंग की है इन लोगों ने काफी अच्छी शानदार लग रही है ।

सारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर आंटी लोग भी खड़े हुए हैं जो देख रही है। यहां पर अपनी कुर्सी भी डली हुई है और पेड़े भी लगे हुए हैं। यहां पर बच्चे नीचे फर्श पर बैठे हुए हैं।

भईया देखिएगा भईया कोई चाय पी रहे हैं और सामने कोई एक भईया चाय पी रहे हैं फोन छु रहे हैं दिखा रहे हैं फोटो में।